और पहाड़ के आगे में भी लाइट भी दिखाई दे पा रहा है।

और राइट साइड में एक लाइट पर भी देखने को पा रहा है।

ऊपर में डायलिसिस लिख के दिखाई पड़ रहा है।

और दरवाजा मे लॉक भी देखने को मिल रहा है।

और मुझे यहां में अन्य दिखाई दे पा रहा है।

और मुझे यहां स्विमिंग पूल भी दिखाई दे रहा है।

दो आदमी बैठा हुआ है और फिर तीन आदमी खड़ा हुआ है।

और फिर एक ठो लड़का बड़ा करके एक बूट्स पहना हुआ है।

ये इस तस्वीर में बहुत सारे आदमी लोग चेयर में बैठा हुआ दिखाई दे पा रहा है।

और ये लोग ठंडी के कारण आग में बैठे हुए हैं।

और आगे में भी बहुत सारे पेड़ दिखाई दे पा रहा है।

और यहां में लोग काम कर रहा है।

बेंच के ऊपर पानी बोतल भी है।

और एक बड़ा चर्च देखने को मिल रहा है।

और सत्संग में बहुत सारे भी देखने को मिल रहा है।

बहुत सारी करने की दिखाई दे पा रहा है।

और साइड में फुल रखा हुआ है।

और पीछे में भी बहोत आदमी लोग बैठा हुआ है।

और कुछ बुक्स बॉक्स में रख के भी दिखाई दे रहा है।

और पानी की तो दूर में भी एक बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहा है।

और पेड़ के ऊपर में भी बहोत सारे गढ्ढे आ रहा है।

और सब लोग गिफ्ट पकड़ के दिखाई दे रहा है।

और ये वाल लाइन से बनाया हुआ है।

और वॉल में भी बहुत सारे लाइट्स सब लगाके दिखाई दे पड़ रहा है।

और सेम कलर की सारी पिकाचू सब भी दिखाई दे रहा है।

और वॉल में भी स्विच बॉक्स दिखाई दे पा रहा है और दो स्विच बॉक्स मिलागा के है।

छोटा कार्पेट भी दिखाई दे पा रहा है।

और ऊपर में भी बहोत सारे लाइट बल्ब लटका के देख पा रहा है।

मुझे इस तस्वीर में लेबर लोग छत की ढलाई करके देख पा रहा है।

की जबरजब और खिड़की भी देख पा रहा है।

इस घर की वॉल में बहुत सारे लगा हुआ है।

और ऊपर में भी एक व्हाईट कलर की फैन देखने को मिल रहा हैं।

मुझे इस तस्वीर में फलों का दुकान देखने को मिल रहा है।

जिसमें एक अंकल बैठा हुआ है।